पाइप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पौधे वगैरह दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।

जोकि लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही--

यहाँ शिवाय कार पार्किंग में खड़ी दिखाई दे रहा है। पोस्टर पे कुछ ऊपर जैसा कुछ लिखा दिखाई दे रहा है।

और मंदिर के अंदर कुछ भगवाने दिखाई दे रहे है। गेट पे बहोत बड़ा चैनल गेट जैसा नही दिख रहा है मंदिर के गेट जैसा दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे है और पेट्रोल के जगह पेट्रोल पंप के साइड में उधर पौधे भी दिखाई दे रही है। उधर से ही साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।